यह एक होटल नज़र आ रही है जिसमे--

यह एक घर प्रतीत हो रहा है जिसके बाजू में--

व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

एक रोड है जिसके आस - पास लोग खड़े हुए है।

एक बिल बना रहा है और हर कोई समान खरीद रहा है और यह लोग--

यहाँ एक दुकान है जिसमे जैकेट और शर्ट मिल--